यह एक मत्स्य पालन मंडी है जहां पर कुछ लोग खरीदी करते हुए और बेजते हुए दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही एक आग बुझाने का सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

पार्क में घूमने के लिए पार्थवे बना रखा है।

पानी की जो गती है वह काफी तेज है पानी तेजी से बह रहा है।

यह तस्वीर एक जागरण या किसी मंडप की दिखाई दे रही है।

यहां पर एक स्त्री और पुरुष गौल्फ की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह बनावट किसी घर या किसी फैक्ट्री की हो रही है।

यहां बच्चे ताइक्वांडो सीखते हैं।

बैठक के स्थान तक पहुंचाने के लिए एक सूचना बोर्ड लगा हुआ है साथ ही सीढ़ी है।

सामने मंदिर और छोटे मोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

यह प्रसिद्ध एक किला या भवन दिखाई दे रहा है।

इसमें सारी छात्राएं दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सुखा स्थल काफी दिखाई दे रहा है पेड़ पौधों की कमी है।

टीचर जो है उन सबको सूचित कर रही है कैसे खेल खेलना चाहिए।

यह तस्वीर एक झील की है।

जिसके अंदर सामने और पीछे की तरफ कुछ डमी ।

ये किसी के घर के बाहर की तस्वीर है जिसके घर के नीचे एक स्विमिंग पूल है।

जगह बहोत साफ सुथरी है पेड़ पौधों को बहुत अच्छी तरीके से लगाया गया है।